ये एगो जंगल लोकत बा और बड़ा पत्थर भी लोकत बा |

ईहा आदमी के पिक्चर मा कुछ आदमी एक आदमी बाजा बजावित हई गिटार बजावित हई --